यहां पर बेड भी लगा हुआ है।

यहां पर पर्दे भी या लगे हुए हैं।

और यहां पर बेंचेज भी लगे हुए हैं और यहां पर--

यहां एक आदमी खड़ा हुआ है।

ग्रे कलर है यहां पर एक वाइट कलर का खंभा भी है और यहां रोड --

यहां पर एक बड़ा आंगन है।

यहां पर कुरकुरे बिस्किट वगैराह चॉकलेट रखी हुई है और अन्य समान भी रखे--

अकेडमी है यहां पर अन्य बहुत सारे लोग भी है और यहां पर फोटो भी लगी --